और यहाँ पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही दे रही है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई शादी समारोह किया जा रहा है यहाँ पर बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं यहाँ पर वाइट वाइट कलर के कुछ पिलर बनाए गए हैं जो डेकोरेशन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहोत ही बड़ी जगह के अंदर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कोई समुंदर का नज़ारा हो या कोई घूमने की जगह हो यहाँ पर एक बहोत ज़्यादा पानी भरा हुआ दिख रहा है।